चित्र के अंदर हमें रेलवे की पटरियाँ दिखाई दे रही है उसपे कुछ गिट्टियाँ दिखाई दे रही है सामने पीले रंग का भवन दिखाई दे रहा हैं ।

चित्र के अंदर हमें दो महिलाएं दिखाई दे रही है महिलाओं ने सर पे दो टोकरी रखते हुए जाते हुए दिखाई दे रही हैं।